यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के पाँचवे भाग में आपका स्वागत है हम अपनी रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रक्रिया में कुछ अंशों और टुकड़ों को व्यवस्थित करेंगे
फिर हम एक पूर्ण जाँच करेंगे यह देखने के लिए यदि यह वाकई में कार्य कर रहा है
पिछले भाग में आपने देखा था कि मैंने खुद को डेटाबेस में रजिस्टर कर लिया था सब कुछ ठीक सही किया था और मैं यहाँ लॉगिन स्क्रीन पर हूँ
देखते हैं यदि मैं लॉगिन कर सकता हूँ लिखते हैं username alex है और मेरा पासवर्ड वह पासवर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया था
मैं देख सकता हूँ कि जब मैं login पर क्लिक करता हूँ फिर से incorrect password
इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा यूज़रनेम नहीं मिला
मैं username में यह टाइप करता हूँ और मेरा पासवर्ड टाइप करता हूँ यह दर्शाएगा that user doesnt exists!
किन्तु यहाँ यह दर्शा रहा है कि मेरा यूज़रनेम मौजूद है किन्तु मेरा पासवर्ड गलत है
अब मेरा पासवर्ड गलत होने का कारण है कि यहाँ मेरे साधारण पासवर्ड की तुलना मेरे डेटाबेस के अंदर मेरे md5encrypted पासवर्ड से की जा रही है
हम यह इस प्रकार से करते हैं कि हम अपने login पेज पर वापस जाते हैं जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल userlogin ट्यूटोरियल में किया था
उस भाग में जहाँ हम अपने पासवर्ड्स की तुलना मेल खाने के लिए जाँचते हैं यह यहाँ हमारा username जाँचता है और यह हमारा पासवर्ड जाँचता है
हमें हमारा पासवर्ड जाँचने की आवश्यकता है अभी मानते हैं कि मैंने मेरा पासवर्ड टाइप किया slicer u k 1
अतः यह पासवर्ड है जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ यह काफी पुराना है
slicer u k 1 ठीक है और यहाँ यह इस और इस पासवर्ड को sliceruk1 के बराबर जाँचता है
किन्तु यह password dbpassword के बराबर है अतः हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं
हमें यह तब चुनने की आवश्यकता होती है जब हम अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करते हैं
अतः अब यह वास्तव में इसके बराबर है अतः यह slicer u k 1 एन्क्रिप्टेड है जोकि इस slicer u k 1 के बराबर है
अतः हम अपने डेटाबेस में एक md5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड की एक एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से तुलना कर रहे हैं
मैं इस फॉर्म को फिर से जमा करता हूँ और लॉगिन ओह! फिर से एरर!
मैं फिर से कोशिश करता हूँ लॉगिन पर क्लिक करता हूँ नहीं यह कार्य नहीं कर रहा है
इसे जाँचते हैंpassword post password के बराबर है अतः md5 पासवर्ड है मैं वापस जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ
मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ ठीक है मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या समस्या है
यहाँ समस्या यह है कि हमारा md5 पासवर्ड बिलकुल सही है किन्तु इसकी तुलना एक पासवर्ड से हो रही है जो हमारे डेटाबेस में कट के छोटा हो रहा है
ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम अपनी संरचना में जाते हैं और यहाँ अपने पासवर्ड फील्ड में जाते हैं और इसे बदलते हैं अभी हमारे पास लम्बाई की सीमा 25 है
अतः हम इसके लिए सीमा को बढ़ाकर 100 तक करते हैं
मैं पूर्ण सुनिश्चित नहीं हूँकि एक md5 string कितनी लम्बी होती है किन्तु मैं length value = 100 लिखूँगा इसे सेव करें
मैं मेरा टेबल ब्राउज़ करने जा रहा हूँ फिर मैं वापस जाता हूँ और फिर से रजिस्टर करता हूँ
अतः रजिस्टर अपना यूज़रनेम चुनिए मानते हैं alex जैसा कि मैंने पहले कहा था पासवर्ड चुनिए लिखते हैं slicer u k 1 और मैं register पर क्लिक करूँगा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
अब चलिए अपना डेटाबेस फिर से जाँचते हैं यह पहले से ही लम्बा दिख रहा है यह कटके छोटा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसकी लम्बाई बदल दी थी
अतः अब जब मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और मैं यह ठीक से टाइप करता हूँ
हम लॉगिन कर सकते हैं और हम अंदर हैं ठीक है तो स्ट्रिंग की लम्बाई जैसी चीज़ों को जाँचिये
आशा है कि आपको यह समझ गया होगा
यदि आप चाहते हैं कि मैं इस ट्यूटोरियल को बढ़ाऊँ तो कृपया मुझे केवल अवगत कराएँ
और यह यूज़र रजिस्ट्रेशन है
यह हमारे यूज़र लॉगिन ट्यूटोरियल से आगे है अतः इनको साथ में रखकर हमें पूरी तरह से कार्य करने वाला यूज़र रजिस्टर और लॉगिन प्रक्रिया प्राप्त हुआ है
मैं इसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्यों में इस्तेमाल करूँगा उदाहरणस्वरुप
मैं किसी पर एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जो कि यूज़र लॉगिन और यूज़र रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता हो अतः मैं इसे बहुत इस्तेमाल करूँगा
अतः अधिक जानकारी के लिए यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर मेरे प्रोजेक्ट्स देखिये
यदि आपके पास कोई प्रश्न है या मुझसे किसी भी चीज़ का विस्तार चाहते हैं कृपया मुझे केवल अवगत कराएँ
भविष्य में अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िये देखने के लिए धन्यवाद आय आय टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद